यहाँ जिम की दुकान है जिम खोल रखे है यहाँ लोग बाग जिम के लिए आते हैजिम करने के लिए आते है यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है लोग बाग अपना शरीर और स्वस्थ के लिए आते है बॉडी बनाने के लिए आते है और डाइट प्लान भी फॉलो करते है।

म्यूजिक की दुकान है यहाँ लोग-बाग म्यूजिक सीखने के लिए आते है।

ये खेल का मैदान है यहाँ लोग बाग खेलने के लिए आते हैं खेल का बहुत आनंद उठाते हैं आजू बाजू गार्डन वगैरह सब बना हुआ है आजू बाजू पेड़ पौधे लगे हुए हैं तार वायर वगैरह सब जा रहे हैं।

उन लोग म आठ पाँच छे बच्चे लोग वहाँ खेल खेल रहे है फुटबाल वगेरह मैच खेल रहे है बहुत ही सुंदर नज़ारा हरा-भरा घास है बड़े-बड़े पेड़ पौधे लगे हुए है।

फुटबाल ग्राउंड है यहाँ लोग बाग फुटबाल खेल रहे है आजू बाजू पेड़ पोधे लगे हुए है बड़े-बड़े झाड़ मन है घास वगैरा भी बहोत अच्छी है फुटबाल लोग बाग फुटबाल फुटबाल खेल रहे है।

लेडीज जेंट्स सभी कोई ये लाइटिंग वगेरा सब बनी हुई है सब कोई अच्छे से कर रहे है और आजू-बाजू लोग बहा बहुत से लोग खड़े हुए हैं।

यहाँ अदिवासी शिल्पी की मूर्ति हुई है बनी हुई है बहुत ही अच्छे से लकड़ी की ऊपर बनाई गई है एक झाड़ है और बच्चे ओर मूल ओर रूम लोग गोदी मे बच्चे लेकर खड़ी है बड़े बुजुर्ग बच्चे सब है और दो झन बैठे हुए है।